ये एक पत्थर जगह में एक आदमी खड़ा है जो पत्थर से पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है।

और कप दोनों भी रखा हुआ है पानी बोतोल भी है और सॉस लोग भी बहुत ज्यादा है।

ये एक मशीन जगह है जहां से रस्सी से कुछ बना रहा है पीछे में दो आदमी काम कर रहा है वो दोनों टीशर्ट पहना हुआ है और ब्लैक पेंट पहेना--

इसको देखने वाला ऑडियंस तो भी बहुत सारा है और साइड में लड़का लोग का एक ग्रुप है जो ब्लैक एंड व्हाइट पहन के जर्सी पेन के है।

ग्रीन वाला पेड़ बहुत सारा है और एक पोज भी लगा हुआ है।

ए एक अंदर मे घुसने का गेट है जहां पर सुंदर सुंदर डिजाइन लगा हुआ है।

उसके बाद उसका एक औरत भी खड़ा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसका बाहर में बहुत सारा स्कूटी रखा हुआ है और बाइक भी रखा हुआ है तरह तरह का कलर का और--

और बीच में एक चेयर भी ब्लैक कलर का लगा हुआ है।

पीछे में उसके पीछे में बहुत सारा आदमीया जो है जूम करने कर रहा है।

और अमूल कूल भी दिखाई दे रहा है और मैंगो जूस बहुत ज्यादा नींबू जूस --

दिखाई दे रहा और एक आदमी भी दिखाई दे रहा--

साइड साइड में जंगल लोग और पेड़ पौधा लोग भी बहुत सारा है।

ये एक बालू रखने वाला जगह फैक्ट्री है जहां में कचरा भी जल रहा एक--

उसका पीछे पीछे में बहुत सारा एकोनर कोने में और एक भाग में बल्ब भी लगा हुआ है।

एक रेस्टोरेंट है जहां पे लिखा हुआ है आरो कैफ रेस्टोरेंट करसके और साइड में--

इसमें ग्रीन कलर का का घास लगा है पीछे में भी बहुत ज्यादा सामान है।

ये भी एक पार्लर है जहां पे लड़कियों बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं।

पानी बोतल भी है लाइट भी ऑन करके है वहां में--

और पीछे में फुल पॉट लगा हुआ है वाइट कलर का उसमें फूल भी लगा हुआ है और यह सामने में स्टेशन को लगा हुआ है उसमें चार्जर लोग भी लगा के--

यहां में पार्लर में जो एक औरत बाल स्ट्रेट कर रहे--

ये जगह पेड़ पौधा लगाने वाला जगह है जहां पे बहोत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है गाड़ी का टायर में भी पौधा लोग लगा के है और उसका सामने में फूल भी ब्लैक कलर का लगा हुआ है।

और पीछे में बिल्डिंग लोग है और एक पोस्ट भी लखा लिखा हुआ है और ओ--

ये एक रेस्टोरेंट या कैफे हो सकता है जहां पे टेबल भी दो दो लगा हुआ है जो कलरफुल है और--

एक बिल्डिंग है जो बाहर में ऑरेंज और ब्ल्यू लगा हुआ है और--

बहुत ज्यादा लाइट भी जल रहा है ऊपर में और वाल में पिक्चर लोग भी लगाके है और--